यहां पर कुछ हरे-हरे पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं जिनके ऊपर कुछ लाल कलर के फूल लगे हुए हैं। कुछ सफेद कलर के भी फूल देखे जा सकते हैं और बीज जैसे देखे जा सकते हैं। नीचे कुछ पैकेट में कर कर मिट्टी भरी हुई है।

यह सब हरे-हरे पेड़ पौधे उगे हुए हैं जिनमे फूले उगी हुई हैं कुछ फूलों का कलर पीला देखा जा सकता है काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

ऊपर कुछ आकाश ब्लू कलर का देखा जा सकता है। कुछ हरे सफेद कलर के बादल भी देखे जा सकते है। कुछ ईटों से बाउंडरी किया गया है। पीछे कुछ बड़े- बड़े पेड़ देखे जा सकते है। नीचे धरती देखी जा सकती है।

यहां पर एक पत्थर जैसा कुछ देखा जा सकता है। ऊपर सफेद कलर का आकाश देखा जा सकता है। कुछ हरे-हरे पेड़-पौधे देखे जा सकते हैं एंड कुछ सफेद कलर का बाउंड्री जैसा कुछ दिया गया है।

काला पत्थर देखा जा सकता है जिसपर सफेद कलर से कुछ लिखा गया है। नीचे कुछ टाइल्स के साथ बिछा हुआ है आगे कुछ जैसा दिया गया है जो लोहे का बना हुआ है ऊपर हरा कलर जैसा दिखाई दे रहा --

यहाँ पर कुछ महिलाए देखी जा सकती हैं। कुछ महिलाए साड़ी पहनी हुई है। एक बड़ा सा तिजोरी जैसा डेक जैसा कुछ बाहर बनाया गया है जो लोहे का बनाया गया है। जिसके ऊपर एक पर्स रखा गया है तथा कुछ और कपड़े रखे गए हैं।

कुछ समाने रखी गई हैं। अंदर नीचे टाइल्स बिछा हुआ है। टाइल्स का कलर सफेद व काला देखा जा सकता है। पीछे एक रोशन दान जैसा कुछ देखा जा सकता है। अंदर गेट देखा जा सकता है।

यहाँ पर कुछ महिलाएं देखी जा सकती हैं। कुछ लोग देखे जा सकते हैं। यहाँ उपर दीवाले देखी जा सकती हैं जिस पर सफेद कलर से पेंट किया गया है तथा कुछ पिले कलर के वेजिन्ग किये गए हैं। नीचे टाईल्स देखी जा सक --

रखा गया है अगल-बगल कुछ पोस्टर्स बनाए गए हैं। ऊपर भी कोई बड़ी-बड़ी भारी-भारी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैंगे। रेलिंग जैसा बनाया गया है जिसका कलर काला दिखाई दे रहा है। बड़ी-बड़ी लाइटे जल रही हैं।